इस फोटो मे सामने एक दुकान दिख रहा है जिसके दीवार का कलर वाइट है और बहुत सारी सेल्फ लगा हुआ है।

हमने एक बड़ा सा नीम का पेड़ दिख रहा है जिसके सामने लैडर रखा हुआ है और खेत पीछे दिख रहा है जहां पर एक इंसान खड़ा है।

इस बिल्डिंग में एक दो खिड़कियां दिख रही है और कुछ गेटे दिख रही हैं बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे इंसान खड़े हैं और कुछ लोग बाहर भी खड़े हैं।

बाहर बहुत सारे बाइक पार्क है और बहुत सारे पेड़ और पौधे भी उगे हुए हैं।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

सामने एक ब्लैक कलर का टेबल रखा हुआ है जिसके ऊपर एक गिलास रखा गया है और इस गराज में बहुत सारे टायर रखा हुआ है।

इस फोटो में सामने एक फैक्ट्री जैसा दिख रहा है।

और एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है जिसका हेड लाइट टूटा हुआ है और इसमें ब्राउन कलर का पेंट लग रहा है।

इसमें सामने एक बैंक दिख रहा है जिसके जमीन का कलर व्हाइट है और सामने एक काउंटर जैसा दिख रहा है जिसको पूरा बैलून डेकोरेट किया गया है।

इस फोटो में सामने एक सोप दिख रहा है जहां पर बहुत सारे कंबल और चद्दर तकिया सब रखा हुआ है।

सुबह का समय है आसमान में बहुत सारे बादल भी हैं।